बड़े-बड़े मॉनिटर्स पर पेमेंट कि स्कीम्स दिखाई गई है कितना जी.बी. डाटा और कितना जी.बी. कॉल देती है।

क्योंकि दो पुलिस वाले पूछताछ करते हुए दिख रहे हैं और सब चिंतित लग रहे हैं।

छवि में हिरने दिख रही है। एक हिरन दूर पानी पी रहा है और दूसरा अपने बच्चों के साथ खड़ा हुआ है खाना खाने के लिए।

छवि में एक बच्चा पेड़ पौधे को पानी दे रहा है। पेड़ पौधों में फूल खिला हुआ है।